शाम के चालू होल ज्यादा तर एमे ढेरे कन पाइप लगी से जे हा बहुत ऊपर तक पानी फेकत हे और अगल बगल मे पौधा लगल हे।

तालाब क बगल में रोड हे ए फोटो हे मोर पंख का है।